कार्यालय शहीद स्मारक है गोल घर गोलंबर है बैटरी रिक्सा है सड़क है एक आदमी है हुई है पेड़-पौधे हैं आकाश है।

टेम्पो के अंदर एक आदमी है।